और इस तरफ एक लंबा सकरा रोड है जिसमें बाइक जा रहा है।

गार्डन में नारियल का पेड़ लगा हुआ है।

बहुत सारे लोग यहां से टहलते जा रहे हैं।

ऊपर में झाड़ी लगे हुए हैं दीवालों से और नीचे तरफ भी एक झाड़ लगा हुआ है।

और दीवाल पर एक दर्पण लगा हुआ है कांच का और गोल गोल डब्बा में शर्ट लोग को रखे गए हैं फोल्ड करके --

इसमें बहुत सारे बॉस लोग खड़े हैं।

गमले में बहोत सारे पौधे को लगाए हुए हैं।

ओ कुछ इंसान पैदल चलते हुए जा रहे है रोड से--

और श दुकान भी लगाई गई है।

और चित्र लगाए चिन्ह लगा है सिक्का और--

रेड कलर की पिंक कलर की ब्लू कलर की।

प्रोजेक्ट तैयार कर के इस कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं।

ऐ चित्र में एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है।

और बगल में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और बहोत सारे वेटर लोग भी खड़े हुए हैं।

ग्राउंड का मतलब बैडमिंटन खेलने वाला ग्राउंड ।

ये चित्र में एक बहोत बड़ा कार हैं जिसमें सामने का भाग खुला हुवा हैं।

और बड़े बड़े चेयर लगे हुए है बैठने के लिए एक स्टेज --

इस चित्र में एक बहोत बड़ा वाटर पार्क है जिसमें बहोत सारे लोग नहा रहे हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा स्टेज है और ऊपर में ए_सी भी लगा हुआ है।

और वायर लगे हुए हैं ऊपर में भी गैलरी बना हुआ है।